बिल्डिंग सी बनी हुई है दीपक कंपलेक्स लिखा हुआ है उसके बगल में एस_आर --

कुछ कार खड़ी है पेट्रोल भराने के लिए बाइक दिया बाइक पे ही एक व्यक्ति इसको चला कर आ रहा है।

आस पास बिल्डिंग बनी हुई है हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं।

जहां उसके ऊपर बोट एक नांव खड़ी हैं आस पास पहाड़ नज़र आ रहें हैं हरे भरे--

हरा भरा गार्डन हैं इस पिक्चर में--

एल_सी_डी लगी हुई है फोटो लगी हुई है।

मजदूर लगे हुए हैं घर बना रहे हैं।

ग्राउंड एक मैदान की फोटो पिक्चर है।

सूखी घास लगी हुई है स्टैंड बनाया है जहां पर बहोत सारे साइकिल्स खड़े किए गए हैं।

जहा बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कुर्सियो पर--

चित्र में एक रोड दिख रहा है। आसपास हरे-हरे घास और हरे-हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

चित्र में दिखाया गया है एक बर्गर बना रहे हैं।

पिक्चर में रेलवे स्टेशन का चिहेडू स्टेशन बना हुआ है। बोर्ड लगा हुआ है। पंजाबी में लिखा है हिंदी में लिखा है चिहेडू ।

साथ में पास सामने उसके ट्रेन जा रही हैं।

चित्र में ग्राउंड के फोटो है स्टेडियम सा बना हुआ है आस पास हरी भरी घास लगी हुई है।

टाईले लगी हुई हैं ब्राउन कलर की है व्हाइट है मल्टी शेप में है पीछे स्विच लगा हुआ है।

स्विमिंग पूल की फोटो है और उसके अंदर स्लाइट --

बने हुए हैं पानी है पानी।

बड़ा सा प्लाट है। उसी के अंदर छोटे-छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं। कई लेडीज बैठी हुई है एक खड़ी है।